ओर इसके ऊपर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है यह ट्रेक की भी तस्वीर भी हो सकती जहाँ व्यक्ति आसानी से दौड़ कर सकते है।

अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी मछलिया पड़ी हुयी यहा पर दिखाय दे रही हैं और खाफी मछलिया पड़ी है बाजार की तस्वीर नजर आ रही हैं।